पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं बंजर जमीन दिखाई दे रही है।

इस इमेज में एक बैंक नजर आ रही है बैंक के बाहर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें कांच लगे हुए नजर आ रहे है।

उम् कैडबरी भी नजर आ रही है दिखाई दे रही है गोल गोल चॉकलेट की--

ये रोड में व्हाइट ब्लू कलर का पाइप दिख रहा है।

एक टेबल लगी हुई नजर आ रही है।

ये इमेज किसी शॉप की नजर आ रही है सामने एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

बलूंस नज़र आ रहे है व्हाईट और पिंक कलर के बलूंस लगे हुए दिख रहे हैं बहोत सारे नल लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

ये इमेज किसी वॉटरफॉल की नजर आ रही है झरना बहता हुआ दिख रहा है बहुत सारे झाड़ पेड़ नजर आ रहे हैं बंजर जमीन दिख रही है।

हिंदुस्तान का झंडा रखा हुआ नजर आ रहा है मशीन में से धुआँ निकलता हुआ नजर आ रहा है।

जहां पे फोर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है एंड लैपटॉप रखा हुआ दिख रहा है एक ऑफिस जैसा बना हुआ दिख नजर आ रहा है।

कुर्सियां रखी हुई दिख रही हैं लाइटिंग लगी हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज में एक ऑफिस नजर आ रहा है ऑफिस के पास एक छोटा सा--

ये इमेज एक स्टूडियो की नजर आ रही है जिसमें--

बेंच पे पानी की बोटले रखी हुई हैं।

एक छत पे पी_ओ_पी का काम करा हुआ है जिसमें लाइटें लगी हुई हैं एक टेबल बिछी हुई--

जाली बनी हुई दिख रही है बहुत सारे--

इस इमेज में एक पान की शॉप नजर आ रही हैं।

पान की शॉप लिखा हुआ है।

ये इमेज़ किसी वर्कशॉप की नजर आ रही है जहां पे एक बड़ी गाड़ी खड़ी नजर आ रही है।

कुछ बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं एक कैमरा नजर आ रहा है।

ये किसी जिम की इमेज लग रहीं हैं। यहाँ पे जिम की मशीनें नजर आ रहीं हैं। बलून्स लगे हुए दिख रहें हैं।

ये इमेज किसी हार्डवेयर शॉप की नजर आ रही है जहां पे बॉक्सो में बहुत सारा सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

एक फ्रेम टंगी हुई नजर आ रही है एक बल्फ का गोला--

यहां पे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग चद्दर पर बैठे हुए नज़र आ रहे है।

लाइट जलती हुई नजर आ रही है बच्चे खड़े हुए दिखे रहे--